मूर्ति काफ़ी अच्छी लग रही है यह मूर्ति को डेकोरेट भी काफी अच्छे से किया गया है यह काफी अच्छी लग रही है।

कुछ पोस्टर ऐसे भी हैं जिसमें ओपो लिखा गया है यहां पे दो व्यक्ति हैं जो--

मंदिर बनाया गया है जो काफी अच्छा लग रहा है।

सामान बहोत सारी टेबल बहोत सारी कुर्सियां बहोत सारे आदमी है यहां कोनर में बहोत सारे बॉक्स भी रखे गए हैं।

दिख जाता हैं। यहां सभी कपड़े बंडल में हैं।

यहां पे अलग अलग तरह के कपड़े हैं यहां पे गंजी--

टंकी रखे गए हैं यह वॉशरूम की ओर--

इसे शीशे में अच्छे से रखा गया है ताकि इसमें मक्खी या कीड़ा न लगे।

यह काफी अच्छा लग रहा है यहां एक आदमी है।

यह सरक है सरक के किनारे--